अंधेरे में चस रही है।

यह तस्वीर हमारे सामने एक --

यह दुकान अभी नयी खुली है। इसके अंदर गुब्बारे ही गुब्बारे लगा रखे हैं। एक व्यक्ति फोटो खींचते हुए दिखाए दे रहे है शीशे में।

यहाँ पर एक मैंडम है जो इनकी फोटो खैंच रही है।

जवान लोग खड़े हैं। यहाँ पर स्कूल के अंदर सेण्टर आ रखा है। यह एग्जाम देने के लिए बच्चे आए हुए है।